यहां पे बहुत अच्छे तरीके से फूल से सजाया गया है।

जहां पे एक बच्ची अपनी सामने औरत को कुछ खिला रही है। जस्ट उसके बगल से एक औरत जा रही है।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

यह एक कपड़ा दुकान का तस्वीर है।

यह एक छोटा सा झील का तस्वीर है।

और बहोत ही अच्छा नकाशी की गई है उसके ऊपर लाइट्स लगी हुई हैं अंदर टाइल्स लगे है।

यह एक बिल्डिंग का तस्वीर है जिसका आधा कलर व्हाइट और आधा कलर ग्ले ग्रे है।

सीढ़ी बनी हुई है और लैंप लाइटे लगी हुई है और आसमान में पूरे बादल है।

पोस्टर के सामने एक वाइट कलर का मेज रखा हुआ है जिसपे यलो कलर का और ब्लैक कलर का गुब्बारा लगाया गया है।